कुछ कपड़े हरे लाल और सफेद रंग के भी है।

जहां पर लकड़ी के कुछ बॉक्स बनाए गए हैं।

पीछे बहुत सारे आदमी काम कर रहे हैं।

जोकि शादी में काम आती है और बाहर दो कुर्सियां रखी हुई है दो बाल्टिया रखी हुई --

यहां पर एक लोहे का कुछ स्ट्रक्चर बनाया गया--

एक बस लाल रंग की है और दूसरी बस नीले रंग की है।

और उनके नीचे सीमेंट का कुछ स्विमिंग पूल बनाया गया है।